औरतें दिख रही हैं जिनके सर पे पोटला बांधा हुआ है।

नीचे बहुत सारे बच्चे भी दिख रहे हैं सामने की ओर पहाड़ दिख रहा है बहुत बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं।

यह एक चार रस्ता का सर्कल है जिसमें --

बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और बिल्डिंगे भी है। रस्ते पर आदमीयां चल रहे हैं।

मंडप लगा हुआ है दूल्हा दुल्हन की कुर्सियां लगी हुई है।

बाहर एक गाड़ी भी रखी गई है ऊपर पत्रा भी लगाया गया है।

यह एक दुकान है जिसका नाम है फार्मट्रेक ।

यह एक बिल्डिंग है जिसमें दो क्लीनिक है जैसे एक --

ये है और आजू बाजू भी बिल्डिंगे हैं और बाहर की ओर झाड़ भी है।

और सफेद रंग बिरंगी फूल चढ़ाये गए हैं दीपक भी जलाया गया--

यह वलसड स्टेशन है जिसके ऊपर बोर्ड मारा गया है वलसाड --

बाहर की ओर झाड़ है कुछ लोग गाड़ी पे है कुछ लोग --

चल रहे हैं बाहर की ओर फाउंटेन भी बनाया गया है।

यह एक केक की दुकान दिख रही है जिसका नाम केक फर्म लव लाइव --

गया है इसमें कांच की दुकान दिख रही है।

कलर लगे हुए हैं साइड में आदमीया है चल रहे हैं।

पिंक कलर का डब्बा रखा गया है महेल में बहोत सारी खिड़कियां दिख रही है।

आरी है जिस पे पर्दा लगाया गया है ऊपर एक ए_सी है नीचे दो चेयर है जिस चेयर --

यह एक शादी का मंडप है जिसमें बाहर झूमर लगे हुए है।

यहां एक दुकान है बड़ा सा जिसका नाम रजवाड़ी है।

कांच वाली है जिसके बाहर बहोत सारे लकड़े भी लगाए गए हैं नीचे की ओर पिलर है।

खड़ी है जिनके पास नीले रंग का छाता है वह कुछ बेच रही है और रास्ते पर लोग चल रहे हैं गाड़ियां भी खड़ी हुई--

नीला रंग का कारपेट बिछाया गया है बीच में काले रंग की कुछ लाइने भी है।

काले रंग की गाड़ी खड़ी हुई है इसमें पी--

ने की ओर मंदिर है और वहां झंडा लहरा रहा है।

की और भी एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने नीले रंग की टी शर्ट पह --

नीचे जमीन है जिसमें बड़े बड़े पत्थर है।

आजू बाजू भी हरे हरे लंबे लंबे झाड़ भी लगे हुए है।

की और कांदा करना दिख रहे हैं सामने की और पूरी दिख रहे हैं।

वह एक ऑफिस है जिस ऑफिस का नाम हुआ दक्षिन गुजरात विज कॉरपे--

लिमिटेड जिसका रंग पीला और नीला है ऊपर की ओर खिड़की है जो खिड़की खुली हुई है।

इस बिल्डिंग का रंग भी सफेद है नीचे की और एक बैनर है जो ब्लू कलर का है उस --

छोटी सी दुकान है जिसमें फल फूल मिल रहा है ऊपर बिल्डिंग भी है।

इस बिल्डिंग का नाम पुलिस अध्यक्ष श्रीनी कचहरी है जिला वलसाड।

इसमें एक सफेद गाड़ी है सामने की ओर झाड़ है और बैरिकेड्स है।

ऑफिस के बाहर दो गाड़ियां खड़ी है फायर एक्सटिंग्विशर भी है और नीला आसमान है।

उतर रहे हैं वहां ब्लू कलर की कुर्सीया रखी गई है।

इस डैम में पांच दरवाजे खोले गए हैं जिसमें बहुत फोर्स --

यहाँ एक स्टेज है स्टेज के ऊपर बहोत सारे लो--

यह एक सुपर स्टोर है जिसमें कुछ सामान मिलते हैं जैसे के--

बिस्किट हो गया नमकीन हो गया सोस हो गया --

पीछे नदी बह रही है। पीछे हरी घास है। इस आदमी ने।

कुर्सियां भी लगी हुई हैं आजू बाजू डिजाइन वाले मंडप भी लगे हुए हैं।

की और दीवाल है ऊपर से स्लाइडर जा रहा है जिसमें से व्हाइट कलर का--

खिड़कियां पे परदे लगे हुए हैं बाहर की और झाड़ और पौधे हैं।

साइड में एक ब्लू कलर का शूज है।

यह एक दुकान है दुकान के अंदर लड़कियों के सामान मिल रहे हैं।

यह एक रूम है रूम के अंदर बिस्तर है बिस्तर के चादर --

सफेद कलर के हैं बाजू में दो पानी कि बोतले रखी हुई है दो रिमोट रखे हुए हैं।

रूम के दोनों ओर परदे लगे हुए हैं ऊपर की ओर एक ट्यूबलाइट है बिस्तर के ऊपर कंबल है जिनके कलर लाल है।

नेल पॉलिश रैक में सब रखे हुए हैं।